साइड में कुछ झूले और सड़क पट्टी बनी हुई हैं पीछे बहुत सारी बिल्डिंगे और--

बालकनी दिख रही हैं जो काले कलर की हैं नीचे हरी घास दिख रही है और साइड में एक स्विमिंग को --

सामने एक बिल्डिंग दिख रही हैं जो सफ़ेद कलर की हैं जिसमें नीले कलर के काँच लगे हुए हैं ऊपर दो झंडे--

लगे हुए हैं और दूर ए कुछ पेड़ दिखाई दे रही हैं ऊपर नीला आसमान दिख रहा हैं।

सामने रैलिंग हैं जिसके इस साइड एक ट्रक खड़ा हैं जो सफेद पीले कलर का हैं जिस पर--

श्री बाबूलाल प्रजापति लिखा हुआ है और दोनों साइड नंबर लिखे हुए हैं और सामने दीवाल --

दिख रहे हैं साइड में एक दुकान हैं और एक नील पीला कलर पोस्टर लगा हुआ हैं जिस पर एन_पी_एस जूनियर --

सामने एक बड़ा सा ग्राउंड हैं जिसमें कुछ मोटरसाइकिल और कुछ स्कूटी दिख रही हैं सामने टीनों का--

योर एक नीला सफेद कूलर रखा हुआ है और साइड में ए--

टंकी बनी हुई हैं दूर बहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं और बहोत सारे पेड़--

सफेद और पीले कलर के पर्दे लगे हुए हैं ऊपर लाल कलर के पर्दे की--

लिखा हुआ हैं नीचे कुछ कार और मोटरसाइकिल दिख रही हैं और सामने एक--

पेड़ दिख रहा है। दूर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और नीचे--

लिखा हैं और साइड में सफेद पोस्टर हैं जिस पर--

बनी हैं और चारों तरफ ग्रीन कलर की पट्टी है और काले कलर की रैलिंग --

कलर की हैं और दूर बहोत सारे पेड़ और बहोत सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं एक बड़ा खंभ है जिसमें ऊपर बहोत सारी लाइट दिख रही हैं।

काली दिख रही है और साइड में एक पील पीला पोस्टर है। जिस पर टू लेट और नीचे नंबर लिखा हुआ है और एक सफेद --

ए थ्री सरोला अरेरा कॉलोनी भोपाल लिखा हुआ हैं।

दो बड़े अक्षरों में लिखा है और तीन फोटो लगी हुई हैं बाहर कुछ आदमी--